सामने में ढेर सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दो लोग झूले पे झूलते हुए नजर आ रहे हैं जो पीले कलर के हैं।

इस पे ढेर सारे सामान रखे हुए हैं।

और यहां पे एक रेड कलर का मैट भी बिछाया हुआ है।

मंच को रोशनी से सजाया गया है।

यहां पे बहोत कोई ने मंकी कैप लगाई हुई है।

सामने में कराटा लिखा हुआ है काले कलर का।

कुछ ऑटो ब्लू कलर की है तो कुछ येलो कलर की और ब्लैक कलर की भी है।

सामने में ढेर सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।

एक बोलेरो दिखाई दे रहा है।

और एक पेड़ भी लगा हुआ है।

और उसके नीचे में ढेर सारी कुर्सी रखी गई हैं जो ब्लू और वाइट कलर में है।

गेट के पास ढेर सारे बैलून लगाए गए--

हमने अलग अलग कलर के ड्रेस पहनी हुई है।

इंडिया का फ्लैग जैसा कुछ बनाया हुआ है जो रेड और वाइट और ग्रीन कलर जैसा नजर आ रहा है।

में कुछ बड़े बड़े पंखे भी लगाए हुए हैं।

पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने में एक घर दिखाई दे रहा है।

आस पास बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

अर्थ का सिंबल बना हुआ है।

यहां पे ढेर सारे रैके बनायी हुई है।

व्हाइट कलर में जा रही है।

ऊपर में बैंक ऑफ़ बड़ोदा लिखा हुआ है।

ब्राउन कलर का है।

के ऊपर एक टोकरी में रखी हुई है।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

यह ब्रिज देखने में कफी पुराना लग रहा है।

और बहुत ही अच्छा मौसम दिखाई दे रहा है।

यहां पे अंदर में कुछ बोरे दिखाई दे रहे हैं।

जिसपे कुछ मेडिसिंस रखे हुए हैं कुछ दवाइयां भी है।

एक बहुत ही बड़ा जगह दिखाई दे रहा है।

यह खेत जैसा भी नजर आ रहा है क्योंकि यहां पे थोड़े-थोड़े जगह पे पानी है।

यहां पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर और नीचे में भी कुछ पत्थर--

सामने में कुछ पहाड़ कुछ घर--

कुछ व्हाइट कलर के घर भी दिख रहे हैं।

कुछ और भी ज्वेलरिस के सामाने रखी गई है कुछ टिकुली भी रखी हुई है।

एक ट्यूशन का दृश्य है।

और यहां पे एक इंसान भी दिखाई दे रहा है।

और बिल्डिंग के में कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है।